घर बने दिख रहे हैं। पेड़ हरे भरे दिख रहे हैं।

दोनों तरफ उनके पेड़ दिख रहे हैं बड़े-बड़े

रोड है रोड के पास सामने थ्रेसर है थ्रेसर में जाली लगी हुई है थ्रेसर --

एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है हाउस का।

महात्मा बुद्ध का मूर्ति है बनी हुई है। ऊपर झंडा लगा हुआ है और काफ़ी मैदान चारो तरफ से दिख रहा है जो बना हुआ है। टाइल्स के पत्थर लगे हुए बील्डिंग बनी दिख रही है और माटी बिछे हुए हैं।

देख रहे है और एक तरफ मिट्टी का ठेला रुका हुआ है वहाँ पे पेड़ ।

होटल जो है एसीजेडी लिखा हुआ है बो --